यहाँ पर एक पुल जैसा कुछ दिखाई दे रहा है एक डेम भी लगा हुआ है दो तीन मजदूर भी दिखाई दे रहे है वह लाल व पीली कलर की टोपी पहने हुए है।